इतना अच्छा बिल्डिंग का डिजाइन है इतना सुंदर डिजाइन है मत पूछिए यहां पे बहुत अच्छा लग रहा है देखने के लिए।

यहां देखिए ये देखिए ये देखिए यहां पे एक आदमी बैठे हुए हैं काउंटर पे।